व्हाइट कलर की है ऊपर का टेरेस है वह पूरा ही खाली नजर आ रहा है यहां पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है| यह पूरा ही सुना लग रहा है।

खुरदुरा थोड़ी सी खराब लग रही है यहाँ कोई इंसान नज़र नही आ रहा साइड के रास्ते में ऊपर और एक घर बन रही है वहाँ पे एक आदमी ऊपर --

सामने से रास्ता एक बहोत ही ज्यादा सुनसान है। यहां पे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। बहोत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही --

घर है जिसका कलर ऑरेंज है बाहर एक बड़ी सी गेट लगी हुई है वो थोड़ी सी पर्पल कलर की है सामने से एक आदमी चल के आ रहा है जो वाइट कलर का कपड़ा पहनें हुए है ऊपर लाइट के कनेक्शन हुए हैं पीछे बड़ी सी नारियल का पेड़ नज़र आ रहा है उसके ब्रांचेस बहुत बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं।

पानी के अंदर बोहोत सारे लाइटिंग लगी है अलग-अलग कलर की और पीछे का जो पंडाल है और उसमें भी बोहोत ही सुन्दर लाइटिंग की गई है। यह देखने में बोहोत ज्यादा अच्छी तो लग रही है। ये बोहोत सुनसान है यहाँ पे कोई इंसान नज़र नहीं आ रा है।